यहाँ पर ग्राउन्ड में कुछ घास लगी हुई है जो दिखाई दे रही हैं।

यहां पर केन रखी हुई है जो दिखाई दे रही है ड्रम रखी है जो दिखाई दे रही है।

ओर एक दुकान दिखाई दे रही है यहाँ पर एक काउंटर रखा हुआ है जिस पर कुछ डब्बे रखे हुए है जो दिखाई दे रहे हैं।

छाता लगा हुआ है जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर घर बने हुए है जो दिखाई दे रहे है यहाँ पर गमले रखे हुए है जो दिख रहे है।

यहाँ पर एक ग्राउड दिखाई दे रहा है जिसमे हरियाली लगी हुई है यहाँ पर एक--

और एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है एक गाड़ी खड़ी हुई है जो दिखाई दे रही है पेड़ लगे हुए है जो दिखाई दे रहे है कुछ-- ।

यहाँ पर तीन व्यक्ति दिखाई दे रहे है जो ग्राउन्ड मे खड़े हुए है। यहाँ पर--

पर कुछ गाड़ियां खड़ी हुई है जो दिखाई दे रही है पेड़ लगा हुआ है जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक खंभा खड़ा हुआ है जो--